नीचे जलती हुई कुछ भट्टी दिखाई दे रही है और ऊपर चैन भी दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ कुछ कुर्सियां पड़ी हुई है जो लोहे की है।

और बीचों बीच सामने की तरफ कुछ तख्ते पड़े हुए हैं।

सामने कार खुली हुई दिखाई दे रही है जिसमें स कार का इंजन दिखाई दे रहा है।

और कुछ चौखट बनी हुई है जिसके ऊपर टाइलें लगी हुई है काले रंग की--

सामने दीवारों पर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं जो कि कुछ फट रहे हैं और कुछ साबूत लगे हुए हैं।

सामने की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई गई है जो की पीले रंग की है जिसमें तीन मंजिल दिखाई दे रही हैं।

फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है इसमें कांच के कुछ दरवाजे लगे हुए हैं।

फुटबॉल का बड़ा सा नेट दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक ऑडिया का स्टोर दिखाई दे रहा है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है।

इस फोटो में एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसके उपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर वैष्णो पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है नीचे की तरफ एक मेज पड़ी हुई दिख रही है।

जो फोन पर बात कर रहा है सामने कुछ खेत और पेड़ देख रहे हैं।

फोटो में एक मेज दिख रही है और एक आदमी का हाथ दिख रहा है सामने की तरफ चार प्लेट रखी हुई है।

पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और लाल थम दिखाई दे रहा है।

फोटो में सामने एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कुछ लाल इटिया बिछी हुई हैं।

इस के अंदर कुछ छोटे छोटे अलमारी बनी हुई हैं।

फुटपाट दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी पेंट की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर एक बड़ा सा मेज पड़ा हुआ है।

एक दुकान पर एक गुड्डा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई दे रही हैं।

सामने एक ठेला खड़ा हुआ है जिस पर अमरुद रखे हुए हैं और जीसके पीछे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ कुछ लड़के बैठे हुए हैं और एक लड़का खड़ा हुआ है।

किचन में नीचे फर्श बिछा हुआ है जो मार्बल है नीचे की तरफ एक बॉक्स पड़ा हुआ है।

जिसमें कुछ घास खड़ी हुई है और कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

एक आदमी ने कैप ओढ़ रखा है जिसके एक पीछे एक पेड़ खड़ा हुआ है।

सामने कुछ पेपरों के बंडल रखे हुए हैं और एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने कुछ लड़कियां नाचती हुई दिखाई दे रही हैं जो की अलग अलग स्टेप कर रही हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ कुछ हिरण चुगते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ी सी बुक सेलर दिखाई दे रही हैं जिसपर ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कुछ टाइले बिछी हुई है।

सामने पार्क में कुछ डंडे खड़े हुए हैं।

सामने की तरफ कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं और कुछ स्टूल पड़े हुए हैं।

ऊपर कुछ इंटीरियर दिख रहा है जिस पर एक बड़ी सी एल_सी_डी लगी हुई है।

अमने एक लाइट और दिखाई दे रही है वो भी सफेद रंग की जल रही है।

सामने कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं जो कि लोहे की हैं।

सड़क के पास में ही कुछ गाड़ी खड़ी हुई दिख रही हैं और एक सामने कार भी खड़ी हुई दिख रही है।